यह एक पार्क हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ है और घुमने के लिए --

रोड्स लगे हुए हैं फिसलने के लिए नीले कलर का रेड पर्पल --

इ साइकिल खड़ी है और यह बालाजी मार्बल का दुकान भी है।

ये बगल मे बालू गिराया हुआ हैं और तीन पेड़ है।

ये महल की दीवारे जैसी लग रही है।

घांस की झड़ियां कुछ नज़र आ रही हैं और ये येलो कलर से पेंट किया हुआ है।

और इसके बगल में बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं इकट्टे हुए हैं पानी बहुत नीला लग रहा है।

पिंक येलो पर्पल इसमे ---